पर्ल में अरै फंक्शन्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम पर्ल में अरै फंक्शन्स के बारे में सीखेंगे जैसे
push pop shift
unshift split
splice और join
sort qw
मैं उबंटु लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5142 का उपयोग कर रहा हूँ
मैं gedit टेक्स एडिटर का उपयोग भी कर रहा हूँ
आप अपने पसंद के किसी भी टेक्स एडिटर का उपयोग कर सकते हैं
आपको पर्ल में वेरिएबल डेटा स्ट्रक्चर और अरैज का साधारण ज्ञान होना चाहिए
कमेंट्स लूप्स और कंडिशनल स्टेटमेंट्स का ज्ञान अतिरिक्त लाभदायक होगा
कृपया संबंधित ट्यूटोरियल के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
पर्ल कुछ इनबिल्ट फंक्शन प्रदान करता है
ये फंक्शन्स अरै पर विभिन्न ऑपरेशन्स क्रियान्वित कर सकते हैं
पहले सीखते हैं कि अरै की अंतिम पॉजिशन से एलिमेंट्स को कैसे जोड़ें और हटाएँ
इसका उपयोग करके यह किया जा सकता है
push फंक्शन जो अरै की अंतिम पॉजिशन में एक एलिमेंट जोड़ता है
और pop फंक्शन जो अरै की अंतिम पॉजिशन से एक एलिमेंट को हटाता है
सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके push और pop फंक्शन्स को समझते हैं
टर्मिनल को खोलें और टाइप करें gedit perlarray dot pl space ampersand
और enter दबाएँ
यह gedit में perlarray dot pl फाइल खोलेगा
कोड को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है
यहाँ हमने लेंथ 3 का अरै घोषित किया है
push फंक्शन इस अरै की अंतिम पॉजिशन पर एक एलिमेंट प्रविष्ट करेगा अर्थात 3 के बाद
जबकि pop पंक्शन अरै की अंतिम पॉजिशन से एक एलिमेंट हटायेगा
हमारे केस में 4 अरै से हट जायेगा
फाइल को सेव करने के लिए ctrl + s दबाएँ
push फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स लेता है
push फंक्शन में पहला आर्गुमेंट अरै है जिसमें एक एलिमेंट जोडना है
दूसरा आर्गुमेंट एलिमेंट है जिसे अरै में पुश करना है
pop फंक्शन का सिंटेक्स निम्न है
pop फंक्शन केवल एक आर्गुमेंट लेता है
यह अरै है जिससे एक एलिमेंट हटाने की आवश्यकता है
ध्यान दें ये दोनों फंक्शन अरै की अंतिम पॉजिशन पर कार्य करते हैं
pop फंक्शन द्वारा हटाया गया एलिमेंट अन्य वेरिएबल में संग्रहित किया जा सकता है
इसके लिए सिंटेक्स है $variable space = space pop ओपन ब्रैकेट @myarray क्लोज ब्रैकेट
अब टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
टाइप करें perl perlarray dot pl और एंटर दबाएँ
आउटपुट टर्मिनल पर दिखाया गया है
अब देखते हैं कि अरै के पहले पॉजिशन से एक एलिमेंट को कैसे जोड़े और हटाएँ
इसे unshift फंक्शन का उपयोग
करके प्राप्त किया जा सकता है जो अरै में पहली पॉजिशन पर एक एलिमेंट को जोड़ता है
shift फंक्शन जो अरै से पहले एलिमेंट को हटाता है
इसे एक सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं
मैं perlarray dot pl फाइल खोलूँगा जिसे मैने पहले ही बनाया है
निम्नलिखित कोड के भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है
unshift फंक्शन पहली पॉजिशऩ पर एक एलिमेंट प्रविष्ट करेगा अर्थात 1 के पहले
shift फंक्शऩ पहली पॉजिशन से एक एलिमेंट को हटायेगा
हमारे केस में जीरो हटेगा
फाइल सेव करने के लिए ctrl + s दबाएँ
unshift फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स लेता है
पहला आर्गुमेंट अरै है जिसमें एक एलिमेंट जुडता है
दूसरा आर्गुमेंट एलिमेंट है जो अरै में जुड़ता है
shift फंक्शन केवल एक आर्गुमेंट लेता है
यह अरै है जिसमें से एलिमेंट हटाने की आवश्यकता है
ध्यान दें ये दोनों फंक्शन अरै की पहली पॉजिशन पर कार्य करते हैं
हम कुछ वेरिएबल में shift फंक्शन द्वारा हटाये गये एलिमेंट को संग्रहित कर सकते हैं
सिंटेक्स यह है $variable space = space shift ओपन ब्रैकेट @myarray क्लोज ब्रैकेट
फिर टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
टाइप करें perl perlarray dot pl और एंटर दबाएँ
टर्मिनल पर प्रदर्शित आउटपुट चिन्हांकित है
अब देखते हैं कि अरै की विशिष्ट पॉजिशन से एलिमेंट को कैसे हटाएँ
splice फंक्शन अरै की विशिष्ट पॉजिशन से एक एलिमेंट को हटाता है
इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू हटाये गये एलिमेंट्स का एक अरै है
अब इसे एक सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं
perlarray dot pl फाइल पर जाएँ जिसे हमने पहले बनाया है
कोड का भाग टाइप करें जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है
हमें इंडेक्स प्रदान करने की आवश्यकता है जहाँ से हम एलिमेंट्स को हटाना चाहते हैं और
जहाँ तक हम एलिमेंट्स को हटाना चाहते हैं
हमारे केस में एलिमेंट्स 5 और 6 हटेगा
तो टर्मिनल पर जाएँ और perl perlarray dot pl
टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएँ
आउटपुट टर्मिनल पर दिखाया गया है
अब अरैज के कुछ अन्य इनबिल्ट फंक्शन देखते हैं
split फंक्शन का उपयोग एक निर्दिष्ट डिलिमीटर पर स्ट्रिंग को विभाजित करने के लिए किया जाता है
इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू अरै है
इस अरै के एलिमेंट्स स्ट्रिंग की विभाजित भाग हैं
join फक्शऩ निर्दिष्ट डिलिमीटर का उपयोग करके अरै के एलिमेंट्स को जोडता है
ये जुडे हुए एलिमेंट्स का स्ट्रिंग रिटर्न करता है
sort फंक्शन वर्णात्मक/संख्यात्मक क्रम में अरै को क्रमबद्ध करता है
qw फंक्शन वाइट स्पेस द्वारा पृथक शब्दों के अरै को रिटर्न करता है
अब इन सभी फंक्शन्स को सेम्पल प्रोग्राम को उपयोग करके समझते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें
gedit arrayfunctions dot pl space ampersand और एंटर दबाएँ
निम्नलिखित कोड के भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है
इस केस में वेरिएबल स्टिंग का प्रत्येक शब्द अरै का एक एलिमेंट बन जाएगा
यहाँ newarray का प्रत्येक एलिमेंट कॉमा द्वारा जुड़ा होगा
sort फंक्शऩ अरै के एलिमेंट्स को वर्णात्मक क्रम में क्रमबद्ध करेगा
qw फंक्शन स्पेस द्वारा पृथक शब्दों का अरै बनाता है
प्रत्येक फंक्शन को समझते हैं
split फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है
पहला आर्गुमेंट डिलिमीटर है जिससे स्ट्रिंग को विभाजित करने की आवश्यकता है
दूसरा स्ट्रिंग है जिसे विभाजित करने की आवश्यकता है
डिलिमीटर्स फॉरवर्ड स्लेश सिंगल या डबल कोट्स में निर्दिष्ट किये जा सकते हैं
join फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स लेता है
पहला डिलिमीटर है जिससे अरै एलिमेंट्स को जोडने की आवश्यकता है
दूसरा अरै है
डिलिमीटर्स सिंगल या डबल कोट्स में निर्दिष्ट किये जा सकते हैं
sort फंक्शन एक आर्गुमेंट लेता है जो अरै है जिसे क्रमबद्ध करने की आवश्यकता है
qw फंक्शन स्पेस द्वारा पृथक शब्दों का अरै रिटर्न करता है
यह जरूरी नहीं है कि शब्दों को कोट्स में निर्दिष्ट किया जाय यदि लिखते समय qw का उपयोग कर रहे हैं
फिर टर्मिलन पर जाएँ और perl arrayfunctions dot pl
का उपयोग करके पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
और enter दबाएँ
स्क्रीन पर निम्न आउटपुट प्रदर्शित होता है
संक्षेप में
इस ट्यूटोरियल में हमनें सीखा
अरै से एलिमेंट्स को जोडना/हटाना
बुनियादि फंक्शन्स जिन्हें सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके अरै पर क्रियान्वित किया जा सकता है
यहाँ आपके लिए नियत कार्य है
scriptspokentutorialorg/indexphp/perl
/ forward slash डिलिमीटर पर उपर्युक्त स्ट्रिंग को विभाजित करें
नये अरै के शुरुआत में https:// जोडें
अरै से एलिमेंट पर्ल को हटाएँ
नंबर अरै घोषित करें और क्रमबद्ध करें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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
आशा करते हैं कि आपने इस perl के ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद